इस जगह पे यहाँ से दो बड़ा-बड़ा टॉवर है और--

रिक्शा है और हम लोगो को रिक्शे से बहुत सुविधाएँ मिलते थे।

और अब तो बहुत कम रिक्शा देखने को मिलता है जिसके कारण टोटो आ गए है।

गाड़ी पार हो रहा है जैसे की बाइक --

बहुत लोग मछली मारने के लिए आये हुए हैं नाव पे |

स्कूल है जो कि यहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती है और बहुत अच्छे पढ़ाई होते है और ऐसा अलग कर देने से बहुत अच्छा पढ़ाई होता है।